इस इमेज में एक क्लीनिंग की क्लिनिक है जिसका बो बोर्ड लगा हुआ है। व्हाइट कलर का बोर्ड है और उसका लोगो लगा है।

और नीचे घास फूस दिए गए रखने के लिए खाने के लिए।

लिखा हुआ है और टाइमिंग दी हुई है।

सही होने के लिए और दो आदमी हैं एक आदमी लाल वाली कार के पास बैठ के सही कर रहा है और दूसरा आदमी खड़ा है जिसने चप्पल पहनी हुई है।

दो तीन लोग हैं और इस मंदिर में वॉच लगी है क्लॉक लगा है।

छोटा सा गणेश जी का मूर्ति भी लगी हुई है।

इस्टार्टिंग कि कुछ चे चेयर चेयर्स ऑरेंज है ग्रीन है एंड रेड है और--

अ सबसे ऊपर एग्जिट के जाने के दो डोर खुले हैं दो डोर हैं।

इस इमेज में एक पार्क की इमेज है जिसमें कुछ लोग बैठे हैं खड़े हैं।

स्ट्रीट लाइट्स हैं एक आदमी बैठा है उसी के पास।

ब्लू एंड वाइट कलर के बलूंस लगे हुए हैं।

एक अंकल हैं जिन्होंने गमछा टांगा हुआ है ऑरेंज कलर का।

कपड़े भी बंधे हुए हैं।

इनमें सामान रखा गया है प्लास्टिक के पॉलीथिन में।

अकाट ब्लू कर्टेन्स लगे गए हैं वॉल फैन हैं।

और नीचे ग्रे कलर का टाइल्स कैसे रखा है।

वो बसेस हैं पीछे जिस पे राय बरेली डिपो लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश परिवहन।

और लाइट्स ऑन है व्हाइट कलर की और एक लाइट है जो पर्पल कलर की है।

जिसपे येलो कलर की लाइटें बोड कल बोड में लगी हुई है।

आए हुए सभी शिव भक्तों का हार्दिक अभिनंदन ये बोर्ड पे लिखा हुआ है लाल का बोर्ड है।

इस इमेज में एक बच्चों को पेंटिंग ल दिखा रही है।

लाल कलर का दीवाल पे जो पेंट हुआ है। नीचे ब्लू कलर का पेंट उसके पास एक गमला रखा गया है।

इस इमेज में एक खाली रोड है बगल में झाड़ियां हैं पौधे हैं पेड़ हैं।

ग्रीन एंड व्हाइट का लोगो है लोगो ए शेप ए शेप में कुछ बना है।

उसके जस्ट नीचे एक पत्ते हैं जो हल्का ब्राउन है ग्रीन है।

के बगल में एक बोर्ड भी लगा है।

मशीन्स रखी गई हैं जिम वाली।

कबर्ड खुले हुए है कपड़े रखे हुए हैं।

लेफ्ट साइट में भी डिलीवर करके नीचे दो नंबर दिए गए हैं।

इस इमेज में एक ज्वेलरी शॉप शॉप है जिसपे फर्शेस और में लाइट्स दिख रही जो ऊपर लाइट्स लगी गई हैं गोल्डन कलर की और छोटे छोटे बल्ब्स लगे गई हैं।